यहां पे कुछ फ्रूट जैसे बनाना पाइनएप्पल स्ट्रॉबेरी ये सब दिखाई दे रहा है।

बिल्डिंग के नीचे बहुत बड़ी लॉन है जहां पे बहुत सारे पेड़ छोटे बड़े पौधे उगाए गए हैं।

कुछ ब्ल्यू कलर के और व्हाईट कलर के डब्बे भी दिख रहे हैं।